बहुत सारी महिलाएं की फेस पे ब्लर और बहुत सारी महिलाएं के फेस पर मास्क लगा हुआ है।

यहां पर कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं जिनका फेस ब्लर किया गया है।

यहां पर एक डी_जे भी दिखाई दे रहा है और कई सारे टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे सामान डब्बे में रखे गए हैं जैसे कि फेविकोल इरेजर टेप एवं बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड लिखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बैग दीवार में लटकाए भी गए हैं एवं बहुत सारे रंग बिरंगे बैग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक जार भी दिखाई दे रहा है जोकि बैगनी कलर का है।

यहां पर केरेट में बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं एवं यहां पर एक आलू में ब्लरिंग भी किया गया है।

यह एक युवक का दृश्य है जहां पर युवक ब्ल्यू कलर का पेंट एवम् ब्ल्यू कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर रूम में एक काउंटर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

इस रूम को बहुत अच्छे से सजावट भी की गई है।

यहाँ पर बहुत सारे डी जे भी लगाए गए हैं जिस पर सिंह सिंह साउंड सेमरी लिखा हुआ है।

इसपर आर्यन डिजिटल सी_एस_सी आधार सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे युवक और लेडिस भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जहां पर बिल्डिंग पे छत पर एक पोस्टर लगाया गया है।

यहां पर कई सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है जो की अल्मुनियम एवं कांच की मदद से बनाए गए हैं।

यहां पर बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं।

यहां पर बाहर में दो मूर्तियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एटीएम मशीन बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

झालर टेंट एवं गुलदस्ता भी रखा हुआ है।

यहां पर एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जोकि दीवाल में लगाया गया है।

यहां पर दुकान के में दो दरवाजे बनाए हुए हैं जो कि नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं।